और ये यहां पे देख सकते हो लाइट वगैर भी बिक रही है ये यहां पे--

ये यहां पे देख सकते सदा बहार ढाबा लिखा हुआ है और ये यहां पे--

ये यहां पे देख सकते हो ये कपड़े दिख रहे हैं।